तैयारी चल रही है जिस में ग्रीन और सफेद कलर के--

है जिसकी दीवारों का रंग येलो है।

बहुत बड़ी लाइट लगी हुई।

यह एक हेयर कटिंग सैलून का दृश्य--

एक कॉरिडोर की फोटो है।

टीम का शेड लगा हुवा हैं।

एक बड़ी बिल्डिंग भी दिख रही है।

यह एक रेलवे स्टेशन है।

एक मिरर में खींच रहा है।

ग्रीन कलर की टी-शर्ट पहनी हुई--

एक ब्रिज बनाने का काम--

झंडा फहराने का एक बड़ा सा डंडा--

लाल कलर की कुर्सियां दिख रही है।

यह एक रोड की इमेज है।